एक कंबल है एक थैली है खिड़की दिखाई दे रही है।

और बोर्ड के बगल में रखें तो ट्रैक्टर की ट्राली है जिसमें--

आलू कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं बहोत सुन्दर सुंदर आलू मुझे दिखाई दे रहे है।

एक इंसान बाइक चलाते हुए जा रहा है एक सफेद सा लाल कलर का घर दिखाई दे रहा है।

एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो गर्ल्स लोगों का है। जहां पर कई सारी लड़कियां दिखाई दे रही है।

और एक सेवन नंबर का ब्लॉक दिखाई दे रहा है दरवाजे के इधर।

पीछे जो इंसान खड़े हैं उसकी बगल में ए_ए_एम_बी ट्रैवल करके दुकान है।

ये आगे लिखा हुआ है एक बैनर पर लिखा हुआ है।

एक इंसान दिख रहा है जिसने सफेद कलर के रुमाल अपने सर पर बांधना है लाल कलर --

काले कलर के जूते पेहने हैं वहां से फिर अपने सामने एक तालाब है बड़ी सी उसमें देख रहा है।

एस_आर_टी_सी करके बस के ऊपर लिखा हुआ है पंखा दिखाई दे रहा है।

कई दो तीन लोग हैं और वाड़िया है लोग है।

ये एक लाल ये दूसरी काँटेनेर के पास में एक लाल कलर का सफेद कपड़ा पहन के रखा है।

पिंजरा टाइप का कुछ है एक लोहे को खाने के लिए उनको प्लेट दिया है और कई सारी मुर्गियां है।

मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा जिसका नाम है फर्स्ट प्राइस फर्स्ट चॉइस ।

म्यूचुअल ब्रांड कार वर्किंग करके शॉप है एक इंसान दिखाई दे रहा है मुझको--

कराटे की चैंपियनशिप के लिए कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक ब--

और इंसानों ने ब्लू कलर का कुर्ता पहना है और उसके ऊपर में हाफ जैकेट --

मस्जिद के जो रहते हैं कई सारे मुसलमान भाईजान दिखाई दे रहे हैं मस्जिद के अंदर।

एक जगह दिखाई दे रही है छोटी सी।

और उसके सामने हरी-भरी पहाड़े हैं जो और पहाड़ है जो हरे-भरे हैं।

और उधर एक तो मुझे काली कलर की बाइक दिखाई दे रही है।

झरने में बहुत सारा अच्छा सा खारा पानी दिख रहा है।

आसमान का मौसम थोड़ा बादल जैसा है देखकर बारिश होने की संभावना है।